इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ घास दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।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

मे मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ किताब दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिखाई दे--

में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिखा--